इस इमेज में एक हरिओम क्षेत्र सोनापुर मेला दो हजार उन्नीस का है ये जो पीले कलर का गेट बना हुआ है।

किसी मशीन के सहारे तोप रखा है और एक रेड कलर की गाडी भी खड़ी हुई है जो की फोर व्हीलर है और उसमें लाइट भी जल रही --

टुकड़ा हुए पेड़ दिख रहे है। और सभी जगह हरे-भरे पौधे है।

ग्राउंड के बाहर बाहर अच्छा हरा-भरा ग्राउंड है पूरा और बड़े-बड़े पेड़--

व्यक्ति खड़े है और एक लेडीज खड़ी है जिसके हाथ में थेली भी है और एक नाव भी है और वो पानी के किनारे खड़े है।

इस इमेज में एक एलोवेरा बुक टू डिपो है जहा पर पचास परसेंट छुट दे रखी है। और यहा पर कॉपी किताब बिक रहे है।

इस इमेज में बहुत सारे लोग दिख रहे है जिन्होंने नई-नई ड्रेसिस पेहनी है और सभी मंदिर के बाहर लाइन लगा के खड़े है और यहाँ पर मंदिर का गुंम्बद दिख रहा है एक पेड़--

इस इमेज में झरना है जो की बीच में जा रहा है आज साइड पहाड़ है जो की--

टवीइंग जैसि मशीने लगी हुई है। और एक बच्चा है जो वाटर पार्क में खड़ा है।

--तल दिख रहे है जो की लगाए गए है और एक लोहे की रैक में यहाँ पर मशीने रखी गई है और एक बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे है।

इस इमेज में एक ग्राउंड दिख रहा है। और गा ग्राउंड के आस पास रेलिंग लगाईं गई है। और रेलिंग के ऊपर--

इस इमेज में एक भैया खड़े हुएं हैं जो की उल्टी कैप लगाए हुए खड़ें हैं और ये यहाँ पर कार के पास खड़े हुएं हैं।